स्कूल के अंदर बहोत सारी चेयर --

रेड और वाइट कलर के तंबू भी लगे हुए हैं।

बहोत सारी लाइट भी लगी हुई है।

ये एक किराने की दुकान है दुकान के अंदर--

ये एक शॉप है शॉप का नाम--

ये एक ऑफिस है। ऑफिस के अंदर एक टेबल लगा हुआ है और दो चेयर्स भी लगी हुई है।

ये एक सोने की दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारी एलईडीयां रखी हुई हैं।

रखे हुए हैं और डब्बे भी पड़े हुए हैं एक स्कैनर की फोटो भी पड़ी हुई है।